सारे गमले दिख रखे हैं और उनमे लाइटे भी दिखाई दे रही हैं गमलो में कुछ पोधे फूल के भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में बहुत सारी नाव दिखाई दे रही है ना एक दो नाव में तिरंगा लगे दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंगे भी दिखी दे रही है।

असिस्टेंट दिखाई दे रहा है और ऊपर से पानी गिर रहा है बस स्टैंड पर बहुत सारे बच्चे खड़े हुई और बहुत सारे फ्रूट्स के ठेले भी लगे हैं।

कुर्सियों का कलर लाल है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आप आसमान में सूर्य की किरणे दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है और उसका पानी बिलकुल कला दिखाई दे रहा है आइड साइड थोड़ी पार जैसी दिखाई दे रही है जिस पर बहोत सारा घास ऊग रहा है और--

कपिलो हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड में एक बीच में से रोड भी दिखाई दे रहा है उस ग्राउंड में छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ हैलगा हुआ है सेंटर लिखा हुआ है।

ब्लू कलर कि बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे एक खिड़की और एक गेट दिखाई दे रहा है अमरुत का भी पेड़ दिखाई दे रहा है।